यहाँ एक अ रोड दिखाई दे रहा है रोड पे बड़ा सिग्नल दिखाई दे रहा है इसपे कई सारे वहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें जीप तथा ऑटो --

के आस-पास कई सारे शॉप दिखाई दे रही है कुछ आदमी पैदल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

तथा यहाँ बाहर कई सारी यहाँ आदमी दिखाई दे रहे है तथा एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ एक घर दिखाई दे रहा है।

तथा यहाँ पे कई सारे आदमी लाइन मे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर एक आदमी जाते तथा आते दिखाई दे रहा है नीचे कई सारी बाइक तथा साइकिल रखी दिखाई दे रही है एक महिला दिखाई दे रही है।

साइकिल पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पे कई सारे रिक्शे दिखाई दे रहा है एक अ बड़ा सा जंक्शन दिखाई दे रहा है जिस पे हाजीपुर जंक्शन लिखा हुआ है।

पीछे कई सारी महिलाए खड़ी दिखाई दे रही है तथा पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है तथा एक आ मशीन दिखाई दे रही है एक पत्ती का ढेर लगा दिखाई दे रहा है।

यह एक पोज़िशन में दिखाई दे रहा है तथा एक लड़का यहाँ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है खिड़की दिखाई दे रही है तथा यहाँ लाइट लगी है फैन दिखाई दे रहा है।